ये बंधन बैंक है उसके आगे एक अम्ब्रेला है--

और से बंधन बैंक के बहार भी एक बाइक खड़ी है।

और एक आदमी गैस पे कुछ चला रहा है सामने किचन के अ वाल पेपर पे बहुत सारे--

ये एक पूरा का पूरा फूलो का मार्केट है यहाँ पर तरहा तरह के फूल है।

ट्रे के ऊपर दो काफी है काॅफी एक कॉफी मग में के अंदर स्पून है दूसरा स्पून कॉफी के साइड में रखा हुआ है।

यह एक पारलर है पारलर का एक अः रूम है जहा पर--

और कुछ फेसिअल मेसिन भी है और लाइटिंग वगैरा कर रखी है सामने एक डोर है।

और वहां पर एक आदमी कुछ बना रहा है अं पतीले मे--

ये एक बहत बड़ा फुटबॉल का मैदान है फुटबॉल क मैदान में छे लड़के दिख रहे है।

ये एक बड़ा सा अस्तबल है अस्तबल के बहार एक घोड़ा खड़ा है।

और उसके आगे पूरा दीवाल से घेरा हुआ है उसके पीछे एक पेड़ है।

साइड में अ खाने की सीजे बोहोत से रखे रखे है और उपर तिन फेन नज़र आरे--

ये एक फ्रेशर डांसर का अवार्ड फंक्शन है। जहां पर स्टेज पे फ्रेशर लिखा हुआ है।

और बहोत सारे डेकोरेशंस किए हुए रेड कलर और वाइट कलर के पर्दे लगे हुए हैं ऊपर लाइटिंग वगैरा लगी हुई हैं।

ये एक कॉफी शॉप है जिसका नाम है ठेका कॉफी ठे देशी लिखा हुआ है।

यह एक छोटा सा केंटिंग एरिया है अ यहाँ पर छे टेबल दिखे दिख रहे है ब्राउन कलर में--

कलर के नीचे कुछ ओलेम कलर का बॉक्स में मेकामिक का सामान है।

अ सामने रोड है रोड के साइड में पांच छः मकान दिख रहे हैं और रोड के बीचों बीच एक खंभा दिख रहा है जिसके ऊपर लाइट के वायर लगे हुए हैं।

ये एक टॉय शॉप है और टॉय शॉप बहुत बड़ा है इसके अन्दर बहुत सारे टेडी बियर्स कलर फुल अ टॉय रखे हुए हैं।

कुछ प्लांट छोटे छोटे डेकोरेट किए हुए हैं और सामने एक लाइट का खंबा दिख रहा है और उसके बाजू में बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ हैं।

इस कलर से खेले हुए है होली और दो आदमी तिन आदमी ने अपने सर पर गमछा बाँदा है।

बहोत सारे छोटे छोटे मिट्ठीयो का प्लांट भी है और--

एक टेबल पे बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं साइड में छोटे छोटे पत्थर मिट्टी र अ झोला वगैरह रखा है सामान--

और रेस्टोरेंट में हमे यहाँ पर दो टेबल नजर आ रहे है और टेबल के आजू बाजू चार चार चेयर रखे हुए है।

इसके भी ब बहोत सारे नोटिस चिपके हुए है एक दो एक दो पेड़ दिख रहे है और पेड़ के पास दो तिन आदमी है।

सामने आ बच्चों का दो स्लाइड दिख रहा है और स्लाइड के ऊपर राउंड सा डिजाइन किया हुआ है आजू-बाजू तीन पेड़ चार तीन चार पेड़ दिख रहे हैं।

और सामने अ रेड कलर का टेबल है उसके आजू बाजू चार चार रेड कलर के चेयर रखे हुए है।

और ट्रेक में बोहोत सारे कैप टंगे हुए है और एक आदमी खड़ा दिखरा है।

यात्री लोग अपना चादर ओर कर सोये है रात का टाइम है।

अ वाईट कलर का अ कुछ भरा है उसके अंदर अंदर छोटे छोटे प्लेट रखे हुए है उका दाना है।

ये एक गाय का तबेला है यहां पर बहोत सारे अं गाय हैं कुछ ब्राउन कलर के हैं।

ये एक बहुत बड़े कंपनी का बोर्ड है अ कंपनी का नाम है न्यू सेंट्रल कम्यूनिटी कंपनी और इसका अ गेट --

रेड कलर में है और बाजू में एक डोर डोर दिख रहा है और दूसरे साइड में बहुत सारे छोटे छोटे--

और सबके पास योग मैट है और आगे वाले लोगों के पास दो ब्लू कलर का मैट है और सबके हाथ ऊपर हैं।

यहाँ अ यहाँ एक बिल्डिंग का काम चालू है जो थर्ड फ्लोर तिन मालो की बिल्डिंग है।

अ बिल्डिंग के बहार बहोत सारे बंबू लगे हुए हैं और जिसका काम चालू हैं कन्ट्रकशन साईट हैं ये--

कैप पहन कर और एक बोर्ड के पास ग्रीन कलर का चेयर है।

और पत्थर के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं आगे भी छोटे छोटे कुछ पेड़ हैं एक पत्थर के ऊपर कौआ बैठा है।